बहोत सारी हरियाली दिखाई दे रही है।

अं अह ये तस्वीर हमें एक कमरे की दिखाई--

इस तस्वीर में हमें एक बुलेट पड़ा हुआ दिखाई दे रहा--

अभी यहां पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

उम्म बहुत सारीयां दुकाना खुल्लियां होइयां है और उस दुकानों के सामने एक कार खड़ी हुई दिखाई दे र--

का शेड लाल रंग का दिखाई दे रहा हैं चारों ओर बहोत हरियाली हैं।

इस तस्वीर में हमें एक नर्सरी दिखाई दे रही है जिस-

हमें एक दुकान दखाई दे रहीं है जिसमें बो सारे कपड़े--

यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा--

यह तस्वीर एक योगा क्लास की है यहां पर बहोत सारे बच्चे योगा कर रहे है।

यह तस्वीर एक मुर्गी खाने की है।

इस तस्वीर मे हमे बहोत सारी एक्सरसाइज मशीनें भी दिखाई दे रही है।

नीचे मिट्टी का बना हुआ फर्श भी दिखाई दे रहा है।

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बहुत सारे कमरे भी बने हुए हैं।